और यहां एक सरकारी स्कूल भी है।

बहोत सारे ब्लड टेस्ट और--

यह एक पहाड़ी इलाके के--

तेल की भी डिब्बे रखे गए हैं और यहां काफी सारे--

प्लाई रखी गई है और यहां--

दोनों साइड एक बड़ी नदी है।

बहोत सारे लोग बाल कटाने आते हैं और इस सैलून का नाम--

सिटी सेंटर सलून है और यहां आज उद्घाटन हुई।

टेंट भी लगाया गया है।

और यहां बहोत सारे लो--

और यहां हर बेड के पास एक टी_बी भी लगाया गया --

टेबल भी लगाया गया--

काफी सारे लोग आते हैं और यहां बहुत सारे--